ये फोटो एक शोरूम की फोटो हैं जो की अलग अलग ब्रांडेड गॉगल्स पड़ी हुई हैं।

दो डॉक्टर कुत्ते को पकड़ कर बैठे हैं।

बिल्डिंग तीन फ्लोर बनी हुई है साइड में इसकी पौडिया हैं।

दूध से बना हुआ प्रोडक्ट मिलता है।

ये फोटो हाथियों की फोटो है।

ये पिक्चर एक सड़क की पिक्चर है।

ये शॉप है यहां पर पंजाबी में लिखा हुआ है।

ये एक पानी को साफ करने के लिए यंत्र है।

टोल प्लाजा हाईवे के ऊपर बना हुआ है।

फोटो है ऑडिटोरियम में कोई भी स्टूडेंट --

साइड पर एक गली भी जा रही--

ये फोटो बहोत ही प्यारी बहोत लग रही है।